कमरे में एक बड़ी सी लाइट भी लगी हुई है जिसका रंग सफ़ेद है और कमरे में बहोत सारे फूल भी रखे हुए हैं जो पीले रंग के दिखाई दे रहे हैं। कमरे में एक टेबल भी --

यहाँ पर एक बोहोत बड़ा मैदान है। मैदान में हरे रंग की छोटी-छोटी घास लगी हुई है। वहीं मैदान में एक जाल बोहोत सारी जाली भी रखी हुई है।

और इन पत्थरों पर बोहोत सारी काई जम रही है जिसका रंग हरा है और वहीं पत्थरों से बोहोत सारी सीढ़ियां भी बनी हुई हैं।